यख मा जी एक लड़का छा यख किनारा मा जी कुछ कपड़ा भी छन रख्यां यख मा जी हरयूं भरयूं घास छ उगयूं यख मा जी कई सारी पिल्टु कर छ पड़्युं।

यख मा जी रेलिंगन कई सारी दिखेण लगीं यख मा जी कुछ घासा दिखेण लग्युं यख मा जी कुछ डाला पिछाड़ी फणा दिखेण लग्यां द्वेदार का डाला छन चीड़ का डाला छन।

सामणी मजी एक पहाड़ दिखेण लग्युं। वै पहाड़ का एंच बरप छ पड़ीं। वै का एंच कई सारा बादलन दिखेण लग्यां। यक मजी देखणा बोहोत ही सुंदर छा उ पहाड़ लगण लग्युं।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु मैदान करा दिखेण लग्युं यख मा जी कई सारी हरी भरी घास करा उगीं सामने मा जी बड़ा बड़ा पहाड़न दिखेण लग्यां ढालदा करा दिखेण लग्यां।

यख मा जी कुरुडु भी छ लग्युं यख मा जी एक टीन कु छप्पर कु मकान कर दिख्येण लग्यूं लाल अर हरे रंग कु टीन कु छप्पर छा यख मा जी कई सारा हर्या-भर्या डालान सामण मा जी एक पहाड़ा पहाड़ा म कुछ मकान छन दिख्येण लग्यां।

मा जी कई सारा बड़ा बड़ा पहाड़ छन दिखेण लग्यां यखमा जी कई सारा ढालदा छन यख पेड़ फणा कई सारा रंग-बिरंगा मकान छन दिखेण लग्यां यखम कई सारी गाडी भी छन रोड मा जी दिखेण लगीं।

यख मा जी एक बाटु करा दिखेण लग्युं यख मा जी एक पुस्ता करा पण्यु यख मा जी कई सारी हरी भरी घास छा यखम सुखी घास भी छा यखम बिट्ठू छ हरयूं भरयूं दिखेण लग्युं।

यख मा जी कई सारा मकान छन दिखेणा रंग बिरंगी इमारत छन दिखेण लगीं यख मा जी रेलिंगन छन दिखेण लगीं यखम बिजली का खम्बा बिजली का तारन पिछाड़ी मा जी हरयां भरयां ढालदा छन पहाड़ छन।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु पहाड़ करा यख मा जी एक बाटु कर भी दिखेण लग्युं यख मा जु कुछ माटु दिखेण लग्युं।

एक मे जी रोड सामने मे जी कई सारी ईमारत तिन का छपर उ इमारतों मा जी लग्यां काला रंग का ड्रम करण रख्यां यख मा जी धुँवा करण निकलन लग्युं यख मा जी गाड़ छ जाणी यख मा जी बिट्टु करा घास --

यखमा जी बड़ा-बड़ा पहाड़ छन डालडा छन यखमा जी बादल भी छन दिखेणा यखमा जी कुरेड़ू भी च छायुं यखमा जी कई सारा हरयां-भरयां डाला छन यखम कई सारा ढूँगा छन राख्यां।